नमस्कार दोस्तों
netbeans ide पर वेब एप्लिकेशन डेवलप करने के परिचय पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
हम समझते हैं कि आपको netbeans की सामान्य जानकारी है
यदि नहीं तो कृपया netbeans पर संबंधित tutorials के लिए spoken tutorial की website पर जाएँ
पहले tutorial को देखकर आप
संस्थापन औऱ netbeans के interface से परिचित होंगे
पिछले tutorial में भी आपको समझाया गया कि नया project कैसे बनाएँ
इसके लिए मैं लिनक्स operating system उबुंटू 1104 और netbeans ide 711 का उपयोग कर रहा हूँ
यह tutorial आपको web applications विकसित करने के साथ बुनियादी netbeans की सामान्य जानकारी के बारे में समझायेगा
हम देखेंगे
वेब एप्लिकेशन प्रोजेक्ट को सेट करना
web applications source files बनाना या एडिट करना
java package और java source file बनाना
getter और setter methods को तैयार करना
default java server pages file को एडिट करना
जावा सर्वर पेज file को बनाना
और अंत में अपने web application project को रन कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको आवश्यकता होगी netbeans ide
java development kit jdk version 6
glassfish server open source edition
उपर्युक्त सभी को screen पर दिखाये गये link से एक साथ downloaded किया जा सकता है
यह tutorial दर्शाता है कि एक साधारण web application कैसे बनाएँ
server पर इसे प्रसारित कैसे करें
और एक browser में इसकी प्रस्तुति कैसे देखें
application employs jsp java server pages आपसे आपका name input करने के लिए पूछता है
यह फिर http session के दौरान name को कायम रखने के लिए javabeans component का उपयोग करता है
और फिर दूसरे jsp पृष्ठ पर output निकालते हैं
अब netbeans पर जाएँ और अपना web application project बनाएँ
file menu से new project चुनें
categories से java web चुनें
projects से web application चुनें और next पर click करें
अपने project को name दें मैं अपने project को helloweb name दूँगा
अपने computer पर किसी भी directory पर project स्थान निर्दिष्ट करें
next पर click करें
server and settings panel खुलता है
java का version चुनें जिसे आप अपने application के साथ उपयोग करना चाहते हैं
और server चुनें जिसे आप अपने application पर प्रसारित करना चाहते हैं
next click करें
frameworks panel में
project बनाने के लिए finish click करें
ide helloweb folder बनाता है
इस folder में आपके सभी sources और project metadata शामिल हैं
welcome पेज index jsp मुख्य window में source editor में खुलता है
आप यहाँ बाईं तरफ फ़ाइल window में project की file संरचना को देख सकते हैं
और यह projects window में logical संरचना है
source files को बनाना और एडिट करना सबसे महत्वपूर्ण function है जिसे ide प्रदान करता है
अब projects window में source packages node खुलता है
ध्यान दें कि source packages node में केवल एक खाली default package node शामिल है
source packages पर right click करें और new> java class चुनें
अपने class को name दें मैं class को namehandler name दूँगा
और package कोम्बोबोक्स में मैं type करता हूँ org mypackage hello
और finish पर click करें
namehandler java file source editor में खुलती है
अब class declaration के नीचे string variable को घोषित करें
मैं एक string variable string name घोषित करूँगा और
मैं class में public namehandler constructor भी जोडूँगा
add मैं constructor के अंदर name = null; भी जोडता हूँ
अब getter और setter methods को बनाते हैं
source editor में name field पर right click करें contextual menu से refactor और encapsulate fields चुनें
refactoring प्रत्यक्ष behavior बदले बिना मौजूदा code की संरचना में सुधार के लिए एक अनुशासित technique है
संक्षेप में आप behavior बदले बिना code की संरचना को बदल सकते हैं
refactoring के साथ आप fields methods या classes चीजों को अलग किये बिना स्थानांतरित कर सकते हैं
वापस ide पर जाते हैं
encapsulate fields dialog नेम field सूची के साथ खुलता है
ध्यान दें fields visibility private के लिए set है
औऱ accessors visibility default रूप से public set है
यह दर्शाता है कि class variables के लिए access modifier private के रूप में निर्दिष्ट होगा
जबकि getter और setter methods क्रमशः public modifiers के साथ तैयार होगा
refactor पर click करें
getter और setter methods name field के लिए तैयार होते हैं
class variable के लिए मॉडिफायर्स private set होता है जबकि getter और setter methods public modifier के साथ तैयार होते हैं
आपका java class अंततः इस प्रकार दिखना चाहिए
अब default javaserver pages file को edit करें
source editor के ऊपरी भाग में प्रदर्शित इसके टेब पर क्लिक करके index jsp file पर पुनः ध्यान दें
अब tools menu> palette पर जाकर palette manager खोलें और html/jsp code clips पर click करें
palatte managerखुलता है
palette manager में html forms के option प्रदर्शित होते हैं
form item चुनें
इस खीचें और अपने source editor में h1 tags के बाद के प्वाइंट्स पर रखें
insert form dialog box खुलता है
screen पर दिखाई गई values निर्दिष्ट करें
action में response jsp
method में get
और name input form के रूप में अपने form को name दें
ok पर click करें
index jsp file में एक html form जुड जाता है
अब palette manager से text input item चुनें इस खीचें और closing form tags के पहले प्वाइंट पर इसे रखें
insert text input dialog box में name के रुप में name निर्दिष्ट करें
type में text रखें
और ok पर click करें
html input tag form tags के मध्य जुड़ जाता है
input tag से खाली value एट्रीब्यूट डिलीट करें
अब palette से button item चुनें
इसे खीचें और closing form tag से पहले प्वाइंट पर रखें
label में ok
type में submit निर्दिष्ट करें
औऱ ok पर फिर से click करें
an html button form tags पर जुड़ जाता है
पहले input tag के सामने enter your name text को प्रविष्ट करें
और h1 tags के मध्य default text को बदलें
हम text को entry form में बदलेंगे
अब right click करें अभी के लिए में palette manager बंद करता हूँ
अपने source editor में right click करें
अपने code के format को ठीक करने के लिए format option चुनें
आपकी index jsp file अब इस तरह दिखनी चाहिए
अब javaserver pages file बनाएँ
projects window में helloweb projects node पर right click करें new> jsp चुनें
new jsp file wizard खुलता है
file को response name दें और finish पर click करें
ध्यान दें कि response jsp file node index jsp file के नीचे projects window में प्रदर्शित होता है
और source editor में नई file खुलती है
palette manager फिर से खोलें
अब jsp option प्रदर्शित होते हैं
use bean item चुनें इसे खीचें और body के ठीक नीचे प्वाइंट पर इसे रखें
insert use bean dialog खुलता है
values निर्दिष्ट करें
id में mybean
class में org mypackage hello namehandler
scope में session set करें
और ok पर click करें
ध्यान tag कि jsp: usebean tag body tag के नीचे जुड जाता है
javabeans java के लिए पुनः उपयोगित सॉफ्टवेयर components हैं
उनका उपयोग single objects में कई objects को संपुटित करने के लिए किया जाता है
ताकि वे multiple व्यक्तिगत objects के बजाय single bean object के रूप में passed किये जा सकें
अब palette manager से setbean property item चुनें इसे खीचें और h1 tags से पहले प्वाइंट पर रखें
और ok पर click करें
यहाँ jsp: setproperty tag में वह दिखाई देता है खाली value attribute डिलीट करें
और नेम attribute के लिए mybeanऔर property के लिए name set करें
अब h1 tags के बीच में text को hello comma space और exclamation mark में बदलें
palette manager से get bean property item चुनें इसे खीचें और h1 tags के bean में hello text के बाद इसे रखें
get bean property item में
bean name में mybean
और property name में name सेट करें
ok पर click करें
ध्यान tag कि jsp: getproperty tag अब tags के बीच जुड़ जाता है
source editor में फिर से right click करें यदि आवश्यक है तो अपने code के format को ठीक करने के लिए format पर click करें
अगला step है अपने web application project को रन करना
मैं palette manager को बंद करता हूँ
projects window में helloweb projects node पर right click करें और run option चुनें
आप अपने project को रन करने के लिए toolbar में run option पर भी click कर सकते हैं या अपने keyboard पर f6 की दबा सकते हैं
मैं अपने project को button करने के लिए toolbar पर button चुनूँगा
जब आप web application रन करते हैं तो ide application code बनाता और compiles करता है
server लॉंच करें और server पर application को प्रसारित करें
और अंततः browser window में application प्रदर्शित होता है
इस प्रक्रिया को देखने के लिए आप window menu से output window खोल सकते हैं और output option चुन सकते हैं
आप देख सकते हैं कि आपका application सफलतापूर्वक बन गया है
index jsp पेज आपके default browser में खुलता है
project को फिर से रन करें
यह यहाँ है यह आपके default browser में खुलता है
ध्यान दें कि browser window कभीकभी ide के server output प्रदर्शित करने से पहले खुल जाता है
अब browser में text box में name प्रविष्ट करें
उदाहरणस्वरूप ubuntu ok पर click करें
response jsp पेज आपको सामान्य सुभकामनाएँ देने के साथ खुलता है
अब नियत कार्य
web application project पर एक extension के रूप में दो और text fields प्रविष्ट करें अर्थात आपके application में कुल तीन input text fields हैं
bean property set करने के लिए javabeans component का उपयोग करें और
browser में इसकी प्रस्तुति देखें
और अंततः दूसरे jsp पेज पर output पुनः प्राप्त करें
मैंने अपना नियत कार्य पहले ही बना दिया है
मैं अपना नियत कार्य खोलता हूँ और इस ide में रन करता हूँ
मैंने 3 input text fields के साथ प्रस्तुत किया है
विवरण प्रविष्ट करें और ok पर click करें
output के साथ इस तरह प्रस्तुत होना चाहिए
screen पर प्रदर्शित link पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करके भी देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद